एक बस दिखाई दे रही है एक गाड़ी आती हुई दिखाई दे रही है एक खंबा दिखाई दे रहा है और एक घर बना हुआ दिखाई देता हुआ नजर आ रहा--

इंलिश खप्पर दिखाई दे रहे है आसमान दिखाई दे रहा है पेड़ दिखाई दे रहे है निचे पूरी जमीन दिखाई दे रही है जमीन काफी--

ऊपर घर दिखाई दे रहा है ट्रक में माल लोडेड है और एक कर्मचारी आगे ख--

एक एक हॉल हैं। हॉल में चार पाच छे टेबल लगी गयी हैं। हर टेबल में चार चेयर रखी हुई है।

और वह ट्रैन के डब्बे में भी कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं तीन चार लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

कांच लगा हुआ हैं दो बड़े पेड़ लगे हुए पंखा दिखाई दे रहा हैं।

एक ट्यूबलाइट लगी हुई हैं लाइट जलती हुई दिखाई दे रही हैं एक चेयर रखी हुई हैं।